दीवार के सामने एक बड़ा सा पानी का टैंक भी दिख रहा है।

नीचे कुछ पेड़ बहुत सारे पेड़ भी दिख रही है।

सामने एक काउंटर दिख रहा है जो ब्राउन कलर का है।

कुछ बॉक्स भी दिख रही है जो लाल कलर का है।

पास ही एक टें टेंट भी दिख रहा है जो ब्लू कलर का है।

यह फोटो में मुझे एक बड़ा सा लेटर बॉक्स दिख रहा है जिनका कलर लाल और काला है।

एक व्यक्ति ऊपर खड़ा होके व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक पहाड़ दिख रहा है।

ठेले के ऊपर एक ब्लू कलर का बास्केट भी दिख रहा है।

सीढ़ियां भी दिख रही है जो नीचे की ओर जा रही है।

तस्वीर एक दुकान की लग रही है जहां पर कुछ खाने पीने का सामान रखा गया है।

डब्बे के अंदर बिस्किट मिठाई दिखाई दे रही है।

इसके आस पास एक गीली मिट्टी भी दिख रही है।

आसपास बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

पास ही गद्दी भी बिछाई गई है दीवारों का रंग नीला है।

यहां पर बहोत सारे चेयर टेबल रखे गए हैं।

सामने एक एक टी_वी भी दिख रही है जो ब्लैक कलर का है फ्लोर का कलर ब्राउन है।

लड़कियों ने स्कूल यूनिफार्म पहना हुआ है।

यह तस्वीर एक छोटी बच्ची की है जो एक पेड़ की दो दो शाक्यों के बीच खड़ा है।

यह फोटो में मुझे एक व्यक्ति दिख रही है जो झाड़ू मार रहा है।

व्यक्ति ब्रिज पे खड़ा है।

आस पास बहोत सारे पेर पौधे भी दिख रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहुत सारी व्यक्तियां दिख रही हैं।

एक व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा है।